यख मा हम तैं एक बस अड्डा दिखेणु वख म सामणि एक बस खड़ी हुईं यखम बहोत सारी कुर्सी भी लगीं।

यखम हमते किताबो की दुकान छ दिखेण लगीं जखम बहोत सारी अलग अलग प्रकार की किताबन रखी --

यखम यखमा जी हम त एक रेलगाड़ी छन दिखेणी जी पर तीन डब्बा लग्यां ये बच्चों वाली रेल गाड़ी और येंका आस पास हम त डाला दिखेणा जोकि हरयां कुछ हरयां कुछ कला कला कलर का ये पर दिखेण लग्यां।

यखम हम त एक बड़ू सी मैदान नजर ओणु वख बहोत सारा किनारा पे का डाला डुला नजर ओणा।

यख मा जी हम ते एक घर छ दिखेण लग्युं जै का आस-आस पास हम ते बहोत सारा डाला बुरदा भी दिखेण लग्यां हरयां हरयां रंग का अर सामणि मैदान भी दिखेण लग्युं खली और घर का बगल बिटि हम ते एक बाइक भी दिखेणी खड़ी करीं कैकि।

वैका आस पास हम ते डाला बुर्ता भी दिखेण लग्यां हरयां हरयां वैका भैर बिटि हम ते एक ल-लोहा की हम ते एक रेलिंग भी छा दिखेण लगीं।

यखमा जी हमते एक विद्यालय च दिखेण लग्युं जखम दुइ कुर्सी बिन रखीं बेहर मजी और यखम स्वामी विवेकानंद जी की हम तस्वीर भी छ बणाई बेहरम यखम मैदान मजी बच्चा बैठ्यां छन डाला क निसाण कोई येफा फंडे बैठ्यूं कोई यख उंडे बैठ्यूं।

ख मा जू छ हम तैं दिखेण लग्युं की एक द्वार कर बणायुं वे का अगाड़ी दिखेण लग्युं कि लोग अन जाणा सामने बिटि एक हम तैं बड़ी सी मूर्ति दिखेणी जू की भगवान बुद्ध की किनारा बिटि यख पौधा पूधा लग्यां लोगों का।